यहाँ पे बहोत सारा बस्ते में रखा हुआ है। फुल दिख रहा है। गद्दा दिख रहा है। गद्दा फुल जी फुल ऍन बहोत सारा फुल दिख रहा है। एक बैठने के लिए चेयर दिख रही है टेबिल टूल लेके खड़ा हुआ है एक आदमी --

एले कमला लेबू दिख रहा है एण्ड अंगूर फल दिखा रहा है यहाँ पे पीपर दिख रहा है कुछ दिख रहा --

चिरिया है | चिरिया खाच में बंद है बैठा हुआ है।

उसके सामने भैस चर रहा हैसफ़ेद रंग से बद बदमिस रंग से --

एण्ड पीछे बहोत सारा बिल्डिंग दिख रहा है छोटा-छोटा घर दिख रहा है पेज दिख रहा है।

रूम है एण्ड यहाँ पे रखने के लिए जगह है।

यहाँ पे भी एक रूम दिख रहा है आ कारखाना दिख रहा है उसके पास में एक ट्रांसफोर्मर दिख रहा है। रा --

यहां पे गड्डी गड़ी को रिपेरिंग कर रहा है उस को सामने से खुला हुवा है और मशीन दिख रहा है बोहोत और अ इंजिन क दिख रा है एण्ड एक घर में एक अ बहार है। इसके पास अ बिल्डिंग है दरवाजा है।

अभी कैक रखा हुआ है कैक में लाब अ त मार करा हुआ है बहुत सारा डिजाइन करा हुआ है सफ़ेद रंग से ऊपर लाल कलर है।

यहाँ पे कुछ बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग में का जो काम हो रहा है एंड बहुत सारा रॉड दिख रहा है है रॉड खड़ा हुआ है।

एण्ड पीछे कुछ लिखा है ड्राय क्लीनर लिखा है एंड एक स्विच बोर्ड दिख रहा है एक फेन दिख रहा है।

बहोत सारे महिला बच्चा लोग है डांस कर रहा है वो लोग हाथ में पकर कर फ्लैग ये --

अ एक मार्ट में सब लोग खड़ा हुआ है खेल रहा है पेल प्ले कर रहा है एंड एक आदमी वे टोपी पहन के है।

''यहा पे एक लड़का का जिम कर रहा है। मार रहा है पीछे कुछ लिखा है डोंट विश फॉर ईट लिखा है।''

एक म लड़की है उसके पास में भी एक बे ए लड़का है और उसके ऊपर एक फैन लगा हुआ है। फ सफ़ेद रंग का एक लाइट लगा हुआ है एक आदमी क कट रहा है बा --

एक बैठने के के लिए बहुत सारा चेयर दिख रहा है मे ए चेयर दिख रहा है बहुत सारा बंदा है यहाँ पे आदमी लोग है।

अभी कुछ लिखा है मे इंक्रेडिबले थ्रेडश यहाँ पे बहोत सारे लड़की लोग है। आदमी लोग है। यहा पे लाईट जल रहा है।

यहा बहुत सारा बैलून लगा हुआ है। एक केबिन एक दु एक पे बहुत सारा कॉस्मेटिक है।

यहाँं पे एक ट्रक है छोटा सा एक ऑटो है।

एक बैठने के लिए जगह है ब्लू कलर का चेयर है एण्ड टेबल है कंप्यूटर है काँच का सब केबिन है। एक टीवी लगा हुआ है एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है।